और इसमें कुछ सफेद कलर के पॉट रखे हुए दिख रहे हैं।

जैसे रियलमी का और विवो का ओप्पो आदि फोन रखे हुए दिखाई दे रहे है।

और पेड़ पौधों के पीछे एक कुछ बस्ती सी भी दिखाई दे रही है।

और इसमें आसपास बहोत से पेड़ पौधे भी हरे कलर के लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और आस पास कुछ झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें कुछ साइकिल भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने रोड भी निकला हुआ है जीसके आस पास बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये फोटो एम_एस_जी_एम स्कूल का दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारे कुरकुरे नमकीन चिप्स और बिस्कुट रखे दिखाई दे रहे हैं।